इसमें बोर्ड पे नाम अपना मैकेनिक दिख रहा है।

कुछ पौधे लगे हुए हैं और कुछ बड़े पेड़ पीछे की तरफ लगे हुए हैं।

जिसका नाम न्यू ताज उपर लिखा हुआ नजर आ रहा है।